पीछे बड़े-बड़े पैर नजर आ रहे हैं।

यहां पर मुझे बहोत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के पीछे से छत को सीढ़ियां लगी हुई है।

ट्रक ट्रैक्टर का रंग सफ़ ब्लैक दिखाई दे रहा है।

इसके पीछे एक बहोत बड़ा पेड़ नजर आ रहा है।

इसमें सफेद कलर की टाइल्स लगी हुई है।

सामने एक व्हाईट कलर की कार है।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

गेट पर ब्राउन कलर की टाइलें लगी हुई हैं।

गेट के पीछे से घना जंगल दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर सामने एक टेबल दिखाई दे रहा है।

गेट के पीछे से बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

यहां पर मुझे बहोत बड़ा होटल दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग्स में बहुत सी खिड़कियां भी दिखाई दे रही है।

इसके आगे एक बोहोत बड़ा पेड़ नज़र आ रहा है।

पीछे बेंचेस दिखाई दे रहे हैं।

यहां मुझे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं।

पीछे आसमान भी नजर आ रहा है।

इसकी दीवारों का कलर सफेद दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर ब्लू कलर की टेबल और व्हाइट कलर की टेबल है।

बड़े बड़े लैपटॉप नजर आ रहे हैं।

जो काले रंग के दिखाई दे रहे--

जो कि हरा भरा दिखाई दे रहा है।

बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

इसके बाहर एक ग्रीन कलर का गेट है।

बीच से कुछ व्यक्ति चलते हुए नजर आ रहे है।

इसके अंदर बहोत सारा त्रिपालो का--

ऊपर से कलर सफेद--

इसका रंग ग्रीन दिखाई दे रहा है।

इसके चारों ओर बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर से बहुत सी लाइट्स दिखाई दे रही है।

इसके ऊपर से एक बहोत बड़ा ब्रिज दिखाई दे रहा है।

पीछे आसमान भी नजर आ रहा है।

यहां पर मुझे बहोत से बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं।

दूर बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

उस पर फसलें उगाई हुई दिखाई दे रही हैं।

दीवारों का कलर येलो दिखाई दे रहा है।

लक्ष्य इंटरनेशनल अकेडमी लिखा हुआ है।

और पे बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई--

फोटो का कलर ग्रीन और येलो नजर आ रहा है।

यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा गहरा समुद्र दिखाई दे रहा है।